यहाँ पर कुछ कुर्सी खाली है तो कुछ कुर्सी पे लोग है कुर्सी का कलर लाल है सामने अभी स्क्रीन बंद है इसलिए वो वाइट दिख रही है।

और यहां पर दीवार पर कुछ फोटो लगी हुई है सामने एक टेबल और चेयर रखी हुई है टेबल पर गिटार और पानी की बोटल है।

और कुछ शर्टस टंगी हुई दिखाई दे रही है वही ऊपर एक बोर्डिंग लगा हुआ है जिसपे एक लड़का खड़ा होके अपनी टीशर्ट शो कर रहा है और एक टीवी भी है।

हमारे सामने एक इमेज दिखाई दे रही है जो की एक मोहल्ले के अंदर की है यहां पर एक गेट दिख रहा है जिसके अन्दर जाने के लिए घर बने हुए हैं।